फ्रीडल बैंक का ए_टी_एम खुला हुआ है इसके साथ ही --

एक कोचिंग सेंटर भी खुला हुआ है।

यह एक बहुत पुराना किला है जिसके --

और बहुत सारे टेबल पर बहुत सारे कागज बने हुए हैं।

अब पानी की एक बोतल भी रखी हुई है सामने --

और कुछ लोग यहां घूम रहे हैं।

एक बाइक खड़ी हुई है।

भी बिल्डिंगे बनी हुई है।

जिस पर कुछ फोटो बनी हुई है।

यह लक्ष्य इंटरनेशनल अकेडमी है जिसमें--

अलग-अलग तरह के पेड़ मोर पंख वाले पेड़ लगे हुए हैं।

और नीचे छोटे-छोटे गमलों में भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं।

और पीछे एक खंभा है जिसपे --

और पीछे नीले रंग के पर्दे लगे हुए हैं और--

यह एक बहुत बड़ा मॉल है जहां पर तरह हर तरह का सामान --

पीछे उसके पीछे भी एक लड़का खड़ा हुआ है और छत पे पंखे और लाइटें जल रही हैं और--

कोल्ड्रिंक की बोतलें भी रखी हुई हैं पानी की बोतल भी--

पर्दे लगे हुए हैं और लैंप भी लगा हुआ है।

जिसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है।

काफी ई रिक्शा घूम रही है।

फोन उसने फोन ले रखा है।

यह एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर सक्सेस इंडिया का बोर्ड --

कुछ बिल्डिंगे भी हैं और लाइटें भी लगी हुई है।

काफी कुर्सियां बिछी हुई हैं कुछ लोग--

यह एक बिल्डिंग है जिसकी--

दिल्ली हार्ट का बोर्ड लगा हुआ है और उसके पीछे--

कुछ इधर-उधर घूम रहे हैं।

और कुछ जानवर इधर-उधर घूम रहे हैं।

चलो एक दो साइकिल पर भी जा रहे हैं और--

यह एक बिल्डिंग है जिसमें--